एक लड़की नृत्य कर रही है बहुत अच्छे नृत्य कर रही है देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है यह लड़की बहुत झूम के साथ नृत्य कर रही है।

अह यहाँ यह पार्क बहुत हरियाली लग रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है।

आयुर्वेदिक दवा से हमें बहुत अच्छा महसूस फ़ील होता है कुछ होता है तो हमें ठीक कर देता है।

और सुबह शाम यहाँ खेलने के लिए आते है ।

और यहाँ पर आदमी घर से आते हैं और घर से जाते हैं सफर करते हैं।

और उस खेत को यहाँ रोकने में बहोत किसान को मेहनत लगा होगा।